पीछे धरे रंग का एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान है जिसका रंग सफेद दिख रहा है।

आस-पास पत्थर की दीवारें दिख रही है पत्थर में हरे रंग के छोटे-छोटे झाड़ लगे हुए हैं।

गाड़ियों का रंग सफेद और ग्रे दिख रहा है पीछे बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।